कुछ साइकिलिंग मशीने कुछ लटकने वाली मशीने इस टाइप की बहोत सारी मशीने रखी हुइ हैं जिम में और मशीनो का कलर ब्लैक और क्रीम कलर का है।

कपड़ों के शोरूम का फोटो लिया गया है जहाँ पे रेडीमेड गारमेन्टस मिल रहे हैं मतलब एक जगह पर लड़कियों के कपड़े पड़े जहाँ पर फ्रॉक्स और सूट और लहंगा --

टोली आ गया है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसे जाली से मतलब दरवाजा लगा हुआ है उसका लोहे का।

और एक बोर्ड रखी हुई है शीप वाली बोर्ड है जिसका कलर है फिरोजी।